यहाँ पर यहाँ पर एकठो फूल जैसे दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे पिलर जैसे दिखाई दे रहे है पीछे चटाई दिखाई दे रही है और --